ये एक अ दुकान है जिसमे की ऊपर कुछ अ ---

बॉन्डी के अंदर है।

जिनपे बहुत सारे पे पेड़ पौधायें लगे हुए हैं।

नीचे कुछ बाइकें लगी हुई है।

ये एक ओवर ब्रिज बनी हुई है ओवर ब्रिज पे --